यह एक नदी है। नदी में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। कुछ आदमी नाव पर बैठे हुए हैं।

यहाँ पर गाड़ी जो गाड़ी ख़राब होती है उसको बना कर अच्छा किया जाता है।

क्लासरूम है क्लासरूम बहुत बड़ा है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है।